नीचे रेड कलर की मैट बिछी दिखाई दे रही हैं। दीवाले तीनो साइड दिखाई दे रही --

यह एक पेड़ है और दिखाई दे रहा है यहाँ नीचे रेत सी जैसी पतली सी रज सी दिखाई दे रही है कुछ लकड़ियाँ सी डली दिखाई दे रही है एक टेम्पो सा खड़ा हुआ दिखाई दे रही है इस बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़की दिखाई --

दो बोर्ड है। एक ब्लैक बोर्ड है एक वाइट बोर्ड लगो हुओ दिखाई दे रहो। यहाँ नीचे फर्श लगो हुओ दिखाई दे रहो। दीवाल वाइट कलर की दिखाई --

यहाँ और भी हैई आदमी खड़े हुए ऊपर दिखाई दे रहे हैं यह एक साइड मे रेड कलर को दिखाई दे रहो (रहा) है रखो (रखा) एक साइड ग्रीन कलर की बॉर्डर दिखाई दे रही है और सोमोन (सामान) भी रखो (रखा) --

इस इमेज में यहाँ एक रोड दिखाई दे रहा दोनों साइडे मकाने व बिल्डिंग बनी भई तीन चार मंजिल दिखाई दे रही है। एक साइड बालकनी बाउंड्री खींची दिखाई दे रही है बड़े-बड़े आम के पेड़ हैं छोटे से --

इस इमेज में यहाँ बहुत सारी सीढ़िया दिखाई दे रही है यहाँ बहुत सारे जेट जैसे नक्से दिखाई दे रहे है इनके ऊपर तम्बू दिखाई दे रहे है बहुत सारे लेडीज जेंट्स --

खडे हुए दिखाई दे रहे है साइडो में रेलिंग लगी हुई दिखाई दे रही है एक आदमी नीचे से ऊपर की और खड़े हुए जाते हुए दिखाई दे रहो है आसमान है ब्लू कलर का दिखाई दे रहो है यहाँ पत्थर लिए --

के किनारो पर दिखाई दे रही है। बहुत लंबी चौड़ी बस्ती दिखाई दे रही है। एक साइड में जैसे शहरी एरिया हो। बोहोत सारे ढेर पेड़ है हरे भरे दिखाई दे रही है। बादल है अम्बर है ब्लू कलर का दिखाई --

यहाँ बिच में रास्ता दिखाई दे रही है खम्बे गड़े हुए दिखाई दे रहे है यहाँ टेंडर लगे हुए दिखाई दे रहा है यहाँ बहुत सारे पक्छी पालन होती है इनके अंडे निकाले जाते है। इन --

बनी हुई आकर दिखाई दे रहा है यह एक सोफे सिंपल बना --

इस वाइट कलर के केक में है यहां दिल पर दिल है रेड कलर के दिखाई दे रहा है एक ब्रोड का स्कूटी रखी ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है कार आते हुए दिखाई दे रहे है काच लगा हुआ दिखयि दे --